से नीला नीला सा भी पेड़ है दिख रहे है और बहोत सारे वहाँ पर फीमेल भी मुझे नज़र आ रहे है ब बहोत दूर तक पहाड़ भी मुझे नज़र आ रहे है।